यहा पर नीचे लोहे की रेलिंग लगी हुई है और दिखाई पड़ रहा है ऊपर आसमान ग्रे रंग का दिख रहा है।

यहा पे फर्श ग्रे कलर की दिख रही है साइड मे बाइक खड़ी सामने आदमी साइकिल के पास--